और खंबे है लाइट है अंधेरा है और कुछ कुछ--

ए एक लड़की ये बच्चा पाई हैं ये--

यहाँ पास चार-पांच लोग बै बैठे हैं।

लाइट लाइट है कंप्यूटर कंप्यूटर है कंप्यूटर बहुत सारी चीज दिखाई दे रही नहीं दे रहे नहीं दे रहे ला तार--